सामने की ओर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो कि बहुत हरे भरे दिखयी दे रहे है आसमान बिल्कुल सफ़्सुत्र और सुन्दर दिखयी दे रहे है और ये दृश्य देखने पर काफ़ि ज्यादा अतरच्तिवे भी दिखयी दे रह है

यह तस्वीर में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में मुझे ढेर सारा पानी दिखाई दे रहा है पीछे की ओर देखने पर बहुत खासिला हिस्सा दिखाई दे रहा है आसमान बिल्कुल साफ- सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आसमान में मुझे बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे हैं।

ये मुझे एक कल्चरल अफ्रीकल रीजल जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है जो की मुझे गोल्डन --

इस तस्वीर मे मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है रूम मे मुझे बहुत सारी तस्वीर लगी दिखाई दे रही है।